इस तस्वीर में एक छोटी दुकान दिख रहे हैं जिस जिसके नाम है एस के सी एस के कंप्यूटर ।

मैदान के पीछे पेड़ और एक बड़ा टेलीकॉम टावर भी दिख रहा है।

राइट साइड में एक आदमी स्वेटर और टोपी पहने खड़ा है।

दीवारों पर कुछ तार और एक छोटी टी_वी या डिस्प्ले स्क्रीन लगा हुआ--

लेफ्ट साइड पर बंधन बैंक की ब्रांच और ए_टी_एम मशीन दिख रहा है।

रस्ते के किनारे लैंप पोस्ट लगे हैं।

इस तस्वीर मे एक पुरानी और लंबी इमारत दिख रही है जो शायद स्कूल या हॉस्टल का हो सकता है।

इमारत के सामने एक बरा और पुराना पेड़ है जो एक छोटी सी माने हैं।

गुफा के चट्टानों से लटक रहे हैं।

पीछे कुछ अधूरे घर और खुला खेत भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे एक मैनिक्विन पर लड़कियों की येलो फ्रॉक पहनाई गई है जो एक शोरूम में रखा गया है।

फ्रॉक का कलरफूल प्रिन्ट है जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन का है।

दीवारों पर तस्वीरें बोर्ड और एक अलमारी भी दिख रही है रूम की दीवारें ग्रीन और येलो कलर से पेंटेड है।

अंदर में एक काउंटर या रिसेप्शन डेस्क है जहां कुछ डेकोरेटिव आइटम्स और क्लासी फेयर रखा गए हैं।

एक महिला ऑरेंज ब्लैक ड्रेस में ग्रीन डोर के पास खड़ी है।

ये एक बायसाइकिल शोरूम है जहां कई तरह के साइकल्स डिस्प्ले में लगी हुई है।

एक सफेद सीमेंटेड पार्क बिल्डिंग के सामने से होकर जा रहा है।

एक तरफ ईंट के ढेर लगे हुए हैं।

ताए तरफ एक सफेद और हरा रंग का बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

ऊपर के शेल्फ में लड्डू बर्फी और गुलाब जामुन जैसी मिठाईयां रखी हुई हैं।

एक सड़क दिख रहा है। जिसमें कुछ गाडींया और एक दो लोग हैं।

पीछे कइ लोगों के हाथ में पूजा की टोकरी और सामान दिख रहे हैं।

गेट के आसपास बैनर और पोस्टर लगा है जिसमें कुछ लोगों के चित्र और सूचनाये दी गई हैं।

यहां लकड़ी के सोफे टेबल बीच में रखी गई है जिन पर लाल सफेद क्वेश्चंस लगे हुए हैं।

बीच में एक बड़ा सफेद स्तूपा बना हुआ है।